और एक और तीन चार रेड़ी रखी हुई है उसके पास काफी सारी बनी हुई है।

ये ईंटों का भट्टा है जहां पर ईंटे तैयार की जाती हैं यहां काफी सारी ईंटे तैयार की जा रही हैं।

जिनमें बल्ब है टॉयज है एक सीजर है और ब्लू कलर की बॉल्स हैं।

चो जिसमें अ नूडल्स है उसके ऊपर रेड कलर की चटनी है।

ब्लैक कलर की चेयर है और एक टेबल पर काफी सारी डिशेज पड़ी हुई है।

ये एक सैलून की पिक्चर है जो कि काफी बड़ा है और उसके नीचे एक जिम खुली हुई है जिसका नाम है आंसवित--

और काफी सारे मिरर हैं यहां बड़े-बड़े मिरर लगे हुएं हैं विंडो बनी हुई हैं।

जिसमें काफ़ी सारे हैं जो कर्टन लगे हुए हैं पर्दे लगे हुए हैं।

और दो बाइक्स लगी हुई है एक ब्लैक कलर कि लगी हुई है एक बोर्ड है जो की रेड कलर का--

एक मॉल है जिसमें काफी सारे अह कपड़े टंगे हुए हैं और डिब्बे रखे हुए हैं खाने वाली चीजें रखी हुई हैं।